और यहाँ पे एक दो आदमी टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

ये एक ऑटो है जिसमें पीछे तीन चार सवारी बैठी हुई हैं।

ऊपर एक चार कोने का जाल बना हुआ है उसमें एक टायर रखा हुआ है।

यहां पे खीरी नंग हाउस का पोस्टर लगा हुआ है।

कुछ लेडिज है कुछ जेंट्स है यहां पे बोर्ल्ड परीक्षा हो रही है।

इसमें लाइट हरी कलर की जलती है और अंदर सफेद कलर की जल रही है।

नीचे होटल खुला हुआ है एक और यहां पे साइड में भी बहुत सारा बड़ा स्टोर खुला हुआ है और--